कुछ हमको सिविल इंजीनियर दिखाई दे रहे है रेता डली है सीमेंट डली है शीत डली है और कुछ रेता भर रहे है ये हमें बोहोत अच्छा लगेगा एक महीने में --

यहाँ पे हमें जे_सी_बी जैसी दिखाई दे रही है उसके अंदर एक लड़का उसको चला रहा है आसपास बहोत हरियाली है।

ए हैं हमें हाईवे रोड लग रहा है यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक टावर पर एक घड़ी लगी हुई--

कुछ पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर एक गाड़ी कि लाइट जल रही है वो हेलमेट लगाए हुए हैं ये हाइवै रोड लग रहा है हमें--

ये हमें कॉफी शॉप जैसा दिखाई दे रहा है इसमें टमैटो सॉस की बॉटल रखी हुई है एक चाय रखी हुई है और कुछ मसाले की पैकेट रखी हुई हैं।

और ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हमको।

हमको यहाँ पर टेबल रखी हुई हैं और पीछे पेड़ लगा हुआ हैं ऊपर भी हैं और दो तीन बेंच रखी हुई हैं।